यह एक किलासरूम है। यहां पर काफी सारे बड़े बड़े बच्चे अपना प्रोजेक्ट का कार्य बना रहे हैं।

यहां पर दीवार पर टाइलें भी लगा रखी है यहां पर छत को में काफी सारे रिबन भी लगे हैं।

अउर यहां पर एक बड़ा हा सोफा भी है और दो छोटी छोटी कुर्सियां भी है यहां पर एक स्टूल भी है।

यहां पर काफी सारे सामान मिलते हैं यहां पर इस गेट पर--

यह एक दुकान है। यहां पर टॉयलेट की काफी सारी सीटें रखी हुई हैं।

यहां पर कुछ बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं इन्ही की साइड में यहां पर कुछ हरी घास उगी हुई है।

यह एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है।

यहां पर एक एडस्ट नाम का कुछ सामान रखा हुआ है।